घास भी है और यहां पर एक बेड लेके नीली कलर --

यहां एक बहुत बड़ी जलरी शॉप है जहां पर बहुत सारे वरकर और बहुत सारे कस्टमर भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहां एक नदी है जहां पर किनारे पर लोहे की जारी लगी हुई है और यहां पर--

बंधी हुई है दो और एक गाय और बछड़ा.

और वहां पर एक बालटी भी रखी हुई है और एक नीम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा--

में कुछ कर रहा है यहां पर बहुत सारी बाइक और स्कूटी --

और वहां पर कारें भी दिखाई दे रही है।

एक ट्रे में कथे कलर की पिंक कलर की साड़ी वाली देख रही है और एक पीले कलर की साड़ी वाली देख रही--

पे छोटे छोटे पौधे रखे हुए है।

छत के ऊपर दो टावर भी लगे हुए हैं और यहां तीन का कुछ भी रखा भी हुआ है।